लग रहा है बाढ़ का समय है बहुत लोग नाव से जा रहे हैं दु गो नाव है एक नाव पे दो-तीन लोग हैं एक नाव पे बहुत सारा लोग --

ये कुछ पार्क का फोटो है वेलकम लिखा हुआ है यहां पे कुछ लोग बैठ के बात कर रहे है दो लोग डिजाइन बना रहे है हूं --

यहाँ पर यू.पी.एस.सी. बुक मिलता है। यहाँ पे मिलता है और दुकान है। लड़का खरीद रहा है दुकान से किताब कॉपी |